और स्कूल के अंदर एक कोरिडोर में --

और यह स्टॉल एक चाय की है।

और सूर्य की लालीमा पूरी आसमान में छा रही है।

अनके प्रकार के आइटम हैं और वे सभी आइटम --

यह दृश्य टेंट के अंदर का है जहां पर --

और दुकान का नाम है डीएसपी सोडा एण्ड कॉफी शॉप ।

ये रेलवे स्टेशन का है और रेलवे स्टेशन का नाम है मुजफ्फरनगर।

और पार्क में घांस भी उगो रक्खी हैं और --

केलसीटों और यह एक विदेशी कंपनी का नाम है।

और शोरूम के अंदर जूतों की वैरायटी बहुत ज्यादा है।

एक रेलिंग पर टाक रक्खा है और बहोत ही सुन्दर हैं।

रेल स्टेशन पार करने में कोई तकलीफ ना आये।

तभी यहाँ पर आयें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें।

यह तस्वीर यह दृश्य एक मंदिर का है और यह मंदिर --

और ये सभी पैसे निकलवाने या डालने के लिए एटीएम में आए हैं।

यहाँ दृश्य एक स्थान का है और स्थान पर --

बांधा हुआ है और गेट के ऊपर लिखा गया है प्रवेशनिषेध है।